और अ एकदम हंसते हुए पोज में फोटो खींचा हुआ है बहोत ही अच्छा लग रहा है मजे कर रहे हैं ये दोनों।

बताया क्या जाए बहुत ही प्राचीन मंदिर है जिसे नौलखा के नाम से जाना जाता है यहां पे तरह-तरह के भगवान है अंदर में।

जैसा कि आप देख रहे हैं यह एक अ शॉप है किराना शॉप है जहाँ कोल्ड ड्रिंक से लेके खाने तक का सारा सामान से लेके भगवान की मूर्ति तक यहाँ --

यह हाजीपुर जंक्शन स्टेशन जो होता है हाजीपुर जंक्शन का फोटो है।

जैसा की आप देख रहे हैं यह कोई मशीनरी शॉप है। यहां पे --

भूखे-प्यासे व्रत कर रहें हैं यह एक बहुत ही प्रसीद प्रसिद्ध त्यौहार बिहार में माना जाता है।

यहाँ पर नर्स और डॉक्टर सभी फोटो खिचवा रहे है खुशी के साथ जो कि बहुत ही अच्छी बात है ये हमारे देश के भविष्य हैं।

मंदिर के बीचो-बिच उपर में गौतम बुद्ध का स्टैचू बनाया गया है।